गमला रखा हुआ है व्हाईट कलर का उसके बगल मे भी बर्तन रखी हुई है खाना बनाने के लिए।

एक बच्चा भी है पीला कलर का टी शर्ट में एक आदमी गंजी और पैजामा में है।

बाहर दो तीन साइकिल लगाए हुए हैं दो बाइक दिख रहा है।

नीचे वाइट कलर की बरतने रखी हुई है कटोरी रखी हुई है।

डब्बा पे एक डब्बा पे आइसोलिक लिखा हुआ है।

एक मशीन है पीला कलर का बड़ा सा रखा हुआ है।

पीछे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं सूरज की रोशनी आ रही है।

अंदर बहोत सारे पेंट रखी है जो कि छोटे छोटे डिब्बे में और बड़े बड़े बाल्टियां में रखी गई हैं।

एशियन पेंट्स कलर वर्ल्ड लिखा हुआ है पेंट का नाम--

यह एक तस्वीर है जिसमें की एक दुकान दिख रहा है जिसके ऊपर डॉगी लिखा हुआ है रेड कलर का उसके आगे ओयो लिखा हुआ है रेड कलर का।

पीला कलर का बॉक्स बनाया हुआ है उसके अंदर सामान रखा हुआ है।

बहोत सारी लड़कियां छोटी सी और बड़ी सी खेल रही है।

यह एक तस्वीर है जिसमें कि एक वाइट कलर की डिजायर खड़ी है उसके बगल में एक बोलेरो है।

एक लाल कलर और ब्लैक कलर की सीट की बाइक भी लगी हुई है।

यहां एक तस्वीर है जोकि होटल का है होटल का नाम होटल बंधन एवं हॉल है।

लाल कलर का चबूतरा बड़ा सा बना हुआ है।

व्हाइट कलर की कार लगी हुई है।

यह एक तस्वीर है जो कि सैलून का है।

एक आदमी है जो स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए खड़ा है।

पीछे पानी की बोतल रखी हुई है डिस्पेंसर है।

दुकान के अंदर बहुत सारे सामान है।

दुकान का अंदर है टेंट लगाया हुआ है।

टेबल कुर्सी पे चार लड़कियां बैठीं है।

मोटे टायर है साइलेंसर दिख रही है।

सारे टेबुल कुर्सी रखे हुए हैं जो की कुर्सी जो है वो नीला कलर की है।

इसका नाम है श्री मारुति।

उसके ऊपर प्लेटे है और गिलासे रखी हुई है।